यहां पर एक अंकल है जो पूजा कर रहे हैं बहुत सारे कलर्स रखे हुए हैं यहां पर हरे सब कलर की फ्लावर पड़े हुए हैं यहां।

पूजा में भगवान को प्रसाद दिया जा रहा है माता जी की मूर्ति बनी हुई है यहां पर और लाइट की रोशनी बहुत ज्यादा हो रही है पीछे बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है।

ऊपर आसमान है ब्लूज दिख रहा है बिजली की तार वगैरा नजर आ रहे हैं यहां पर।

बोहोत पैड है घना जंगल जैसा दिख रहा है यहा पे भी लोहे की तारों से बॉउन्ड्री बना रखी है नीचे यहां अ पे घास लगा हुआ है पेड़ लगे हुए है।

जिस पे कचरा वैराग डला हुआ है यहां पे पेड़ आपको दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है।

ये गार्डेन या पार्क बोल सकते है यहां पे चेयर लगी हुई है हरा कॉलर है ब्लैक कॉलर की चेयर है ऑरेंज कॉलर है सामने डस्टबीन है।

और यहां पे लोहे की जाली लगी हुई है जिसपे येलो और ग्रीन कॉलर है और एक लाईट का यहां टावर भी दिख रहा आपको --